की शादी का है। जिसमें दूला उसकी मां उसके पिताजी पंडित वह बहुत से लोग आसपास के बैठे हुए है। सजावट बहुत ही सुंदर है। सामने--

साड़ी इलाका है जहां ढेर सारे घने-घने पेड़ पौधे हैं।

जो हम देख पारहे है यह है अदमिनिसट्रेटीभ ब्लक अदमिनिसट्रेटीभ ब्लक के आसपास बहोत से छात्र छात्राएं दिख रहे है।

कैफे का दृश्य लग रहा है। पास ही एक वी- विक्की गैरी कर के कुछ लिखा हुआ हैं।